जोकि अंदर जा रहे है। एक व्यक्ति हाथ पर झोला लिए भी दिख रहा है।

दुकान के अंदर से ली गयी लग रहा है जिसके सामने सीढ़ी है। सीढ़ी नीचे जाने के लिए है मतलब ये फर्स्ट फ्लोर की दुकान है।

यह फोटो एक चर्च की है जोकि आपको शक्ति और शांति देने के लिए बना --

यहाँ जीसस यानी ईसा मसीह आपको सही राह दिखाने के लिए --

चर्च के अंदर एक ईसा मसीह की मूर्ति है। जिन --

लेकिन ये देखने में एक आम इमारत की तरह लग रही है।

चर्च के गेट के बाहर रोड नहीं दिख रही | एक गड्ढा है गड्ढे में पानी भरा पानी से कीचड़ हो गया है।

कार का रंग सफेद है। कार के बगल पर एक बाइक खड़ी हुई दिख रही है। बाइक काले और लाल रंग में दिख रही है।